इस तस्वीर में देख पा रहा हूं ये मू ये मुझे बहुत ही बड़ा हॉल नजर आ रहा है जोकि टाटा कंपनी का लग रहा है इसमें दो कारें खड़ी हुई हैं और ये एक गैरेज भी है।

बच्चे निर्त जोकि स्टेज ऊपर बैठे हैं और नृत्य की तैयारी में है जोकि एक मम भी पास में देख अनाउंसमेंट कर रही है नेम और दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ में ये --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि मुझे एक जो की एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर फौजियों का टैंक खड़ा हुआ है जोकि--

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये एक ओ ऑन रोड हाईवे पर है जो की बाजार की टाइप बाजार जैसा लग रहा है उसमें बड़ी बड़ी मन --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि ये एक ऑन रोड लग रहा है। इसमें तीन मंजिला इमारत है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक यह बड़ा बड़ा ही ग्राउंड या एक बड़ा ही मतलब जो की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की उसकी आकृति लंबाई में है नापी जा सकती है।

और ये दो मंजिला ईमारत जो कि जिसकी लंबाई भी बहोत काफी दिखाई दे रही है आसमान खुला हुआ नजर आ रहा है।

लेडीजो की स्वेटर है स्वेटर दिखाई दे गई हैं इसमें पुतलों को स्वेटर पेहनाते हुए दर्शाया गया है नीचे की तरफ में देखे तो बहुत ही सारे कपड़े कपड़े ही दिखाई दे रहे हैं।

बाहर की तरफ एक दे देवता की फोटो लगी पहुंचे की मूर्ति लगाई गई है और पीछे की तरफ में देखें तो मुझे --

और बहुत बढ़िया चित्र लग रहा है।

इसके आपास पास में मुझे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हरियाली बहुत दिखाई दे रही है।

कूलर और वाशिंग मशीनें इत्यादि ये मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम लग रहा है जहां से एक ही छत के नीचे सारी --